एक हरे कलर का पर्दा है।

यह एस_बी_आई बैंक का ए_टी_एम है।

और ऊपर पंखा लगा हुआ हैं ।

यह एक गार्डन है।

जिस घर के काम चालू है अभी सामने गिट्टीयाँ पड़ी हुई है।

ऑटो का कलर हरे अ हरा है।

और कई व्यक्ति यहाँ पे घूम-फिर रहे हैं।

उसके चारों तरफ कुछ कसेंडी जैसे रखे हुए हैं।